यहां पर मोबाइलों की दुकान है यहां पर तरह-तरह के मोबाइल मिलते हैं ऊपर मोबाइलों के ठप्पे है जो की कुछ रेड कलर के हैं कुछ --

यहां पर एक सड़क जा रही है मेन रोड है मेन रोड पे एक टैक्सी खड़ी है।

सामने अलमीरा में रखे हुए हैं जो कि अलग-अलग कलर के हैं और अलग-अलग साइज के हैं। सबके अलग-अलग डिजाइनिंग हैं।